यहाँ पर अंगूर हैं। अंगूर रखे हैं अनार रखे हुए हैं संतरे रखे हुए हैं। यहाँ पे एक केला है। उसपे लाल नीले कलर की --

और यहाँ पे एक आदमी भी बहोत सारे हैं | यहाँ पे एक मीनार टाइप की भी खड़ी है | यहाँ पे एक पाइप जा रहा है।

यहाँ एक बारकोड है। उसपे नीले कलर से फोनपे भी लिखा हुआ है। सामने बोतल चमक रही है थम्प्स अप की। सामने कुछ सामान रखा है।

बादल भी यहाँं नीले बादल है उस साइड और वहाँं पर एक पेड़-पौधे भी लगेवे है और एक वहाँं पे यहाँं पे बैग भी रखे हुए हैं।

यहां पर एक कार है । कार का डिब्बा ऊपर रखावा है । नीचे --

यहां पर फूल चमक रहे हैं मुझे सामने पड़ पौधे भी लगे हुए हैं। गुलाब के फूल नहीं है यहां पर और यहां पर गेंदे के फूल लगे हुए दिख रहे है। सामने देखिये जगह अच्छी है यहाँ पे एक एक वो भी रखा है।